सारे बिल्डिंगे दिखाई दे रही है कुछ का कलर व्हाइट है कुछ का कलर ब्लू है और पानी भी इकठ्ठा हुआ हो रखा है पानी के ऊपर मैल जमी हुई है।

यहां पर मुझे एक बेड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर व्हाइट कलर का गद्दा बिछाया और इसमें फर्श है जो --

यहां पर एक ब्लैक कलर की बाइक खड़ी है इसके पास है एक व्हाइट कलर की गाड़ी भी खड़ी है यहां पर इस --

दुकान है जिसके अंदर कांच की खिड़कियां बनी हुई है और ड्रॉर बने हुए हैं जिसके अंदर बहुत सारे नए प्रकार के शैंपू साबुन फेस वॉश रखे हुए हैं और --

मुझे यहां सामने एक साइकिल दिखाई दे रही है और कुछ ब्लॉक की बनी हुई रोड भी दिखाई दे रही है यहां पर एक पोल भी है जिसके ऊपर लाइट लगी है।

यहां पर सामने एक दुकान बनी हुई है जिसके अंदर पूरे व्हाइट कलर की टाइलें और पिंक कलर की दीवार है जिसके अंदर बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

यहां पर है जो एक व्हाइट कलर की दीवारों का मकान बना हुआ है जिसके अंदर कुछ आदमी बैठे हुए हैं और--

हरा है और पास में एक वो निशनी भी रखी गई है जो मंदिर के ऊपर छत के चढ़ने के लिए काम आती है और इसके चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है जिसका कलर व्हाइट है।

यह एक कपड़ों का शोरूम है जहां पर बहोत सारे कपड़े भी रखें गए कोट रखे गए है इसके अंदर लाइटे लगी है ए_सी लगी है।

हरे कलर का गेट भी बना हुआ है जो दिखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहां पर आदमी अपने आप को सुंदर बनाने के लिए आते हैं।

यहां पर एक मैकेनिक के गाड़ी की रिपेयरिंग कर रहा है और इस गाड़ी का कलर है वो व्हाइट है बोनट है जो अंदर से --

लोहे के ढांचे पर बने हुए पर चढ़ रहे हैं और यहां पर गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिनमें पत्तियों का कलर हरा है।

ये एक बुक सेंटर है यहां पर बहोत सारे अनेक प्रकार की बुके मिलती है और कुछ लोग यहां पर बुके खरीदने आए हुए हैं।

ब्राउन कलर की टाईले लगी गई है और यहा पर ए_सी भी लगी हुई है यहाँ पर एक काउंटर भी है जहाँ पर कैशियर का काम--

सभी प्रकार की दवाइयां मिलती है और यहां पर दीवारों का कलर है वो एकदम व्हाइट है और व्हाइट पंखा भी लगा है जो अभी पर --

यह एक कपड़ों की दुकान है जहां पर ए_सी लगे हुए हैं बहुत सारे लाइटें भी लगी हुई है कुर्सियां रखी गई है लकड़ी के फर्नीचर भी बने गए हैं।

यहां पर बहोत सारे लोग बैठे है इसके अंदर--

दो ए_सी लगी हुई है सामने एल_सी_डी चल रही है ऊपर लाइटे लगी है दीवारों का कलर व्हाइट है।

यहां पर मुझे एक सरकारी स्कूल दिखाई दे रही है जिसकी दीवारों का कलर व्हाइट ऐंड रेड मिक्स है और सामने गेट है और लकड़ी का बना है।

यहां पर मुझे दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिसका कलर हरा है एक खंभा दिखाई दे रहा है एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके --

जो कि बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है जिसका कलर रेड है माला रखी हुई है दुकान भी है दुकान के अंदर शीशे लगे हुए हैं।

दीपक रखा हुआ है फोन पे रखा हुआ है उसके पास में एक चेयर लगी है और इस काउंटर के नीचले साइड शीशा लगाया गया है।